अंदर कुछ लोग जा रहे हैं बाहर एक लड़का है।

अ एक मशीन बड़ी सी दिख रही है जिसके नीचे एक बूढ़ा आदमी कम कर रहा है उसके ऊपर भी एक लड़का--

एक छोटा पिकअप है जिसमें ओम और श्री श्याम कैन सर्विस --

और ऊपर सीलिंग पे डिज़ाइन बनी हुई है।

रु आसमा आसमान और बादल दिख रहें हैं।

और बिल्डिंग है जहां पर एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ है उसका लोगो भी है।

जहां पे बहोत सारी बकरियां है जो क्रीम और ब्राउन कलर में है और--